य एक पेट्रोल पम्प है। जहां बोहोत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

एक बहोत बड़ा घर है। जिस पे एक बहोत बड़ा हॉल है।

रात बहोत हो चुकी है और पूरा अंधेरा दिख रहा है।

घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और घर में कांच का खिड़की है।